जिसके चारों तरफ मुझे पानी दिखाई दे रहा है और वो एक पत्थर पे बैठा है उसके पीछे एक बड़ा सा--

और इसमें आजू-बाजू दो लाइटे लगी हुई है।